यहां पर बीच वाली सेल्स पर निविया के कुछ लेशंस रखे हुए हैं।

यहां पर बहौत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रही है।

यहां पर बीच में एक लड़का ब्लू कलर की टी शर्ट में दिख रहा है।

यहां पे दो वाइट कलर के चेयर्स रखे हुए हैं।

यहां पर बाएं तरफ में एक ऑरेंज और वाइट कलर का कप दिख रहा है।

यहां के फ्लोर का रंग व्हाइट कलर में दिख रहा है।

यहां पर पीछे में एक टीने वाले घर दिख रही है।

यहां पे इस आदमी ने ब्लैक कलर की हॉफ पैंट पहनी हुई है।

यहां पर पीछे में नीला आसमान में सफेद बादल छाया हुआ है।

यहां पर वॉल में बहुत सारे आइने दिख रहे हैं।

यहां पर एक औरत पिंक कलर की कुर्ती पहनी हुई है।

यहाँ पर दाया तरफ मे एक बोट भी दिख रही है।

यहाँ पर बहुत सारे मिठाईयाँ दिख रही है।

यहां पर इस ब्रिज के पास बहोत सारे पेड़ उगे हुए हैं।

यहां पर बांये वाले छोटे से पोस्टर में रूपीस फोर्टी नाइन लिखा हुआ है।

यहां पर ढाबा के बाहर में केरला होटल लिखा हुआ है।

वहां पर एक वॉचमैन ने ग्रे कलर की सूट पहनी हुई है।

यहां पर एक ऑरेंज और यलो कलर का छोटी सी ट्रेन दिख रहा है।

यहां पर बाएं तरफ में एक बड़ा सा आइना दिख रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे काठ के ब्राउन वाले चेयर्स दिख रहे हैं।

यहां पर एक ब्राउन कलर का सोफा भी दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे कलरफुल पर्दे लगाए हुए हैं।

यहां पर ऊपर में बहोत सारी येलो लाइट जली हुई है।

यहां पे सफेद आसमान छाया हुआ है।

यहां पर एक आदमी लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे इस लड़के ने ब्लैक कलर की स्पोर्टिंग पहनी हुई है।

वहां पर पीछे में एक लड़का ब्लैक कलर के पैंट पहनी हुई है।

यहां पर इस आदमी ने येलो कलर की टोपी पहनी हुई है।

यहां पर बाएं तरफ वाला आदमी ने ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए है।

यहां पर इस आदमी के बाल का रंग काले कलर में दिख रही है।

यहां के वॉल का रंग ब्लू कलर में दिख रहा है।

यहां पर स्कूल की बाईं तरफ में एक ग्रीन टीने वाले रेस्ट हाउस भी दिख रही है।